सामने एक दुकान है जिसमें बहुत सारे रैक बने हैं जिन पे कंप्यूटर रखे हुए हैंऔर कुछ पर्चे चिपके हुए हैं साइड में कांच का गेट है।

बहुत सारे बेड रखे हुए हैं जो अलग-अलग कलर --

जमीन है ऊपर नीला हरा आसमान दिख रहा है।

सामने एक दुकान है जिसमें कांच के गेट हैं और अंदर बहुत सारे रैंक बने हुए हैं जिनमें--

दिखाई दे रही है जो रंगीन दिख रही है ऊपर छत में एक लाइट दिख रही है और नीचे फर्श सफे--

सामने बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं जिनके पीछे कुछ बच्चे दिख रहे हैं जो सफेद कलर के कपड़े पहने हैं और--

सामने बीच वाला आदमी पिंक कलर का और मुकुट लगाए हुए है और दोनों साइड पर एक पोस्टर लगे हुए हैं पीछे दीवाल --

पीछे की दीवाल नीले कलर की है और पीछे एक--

शटर है जो बंद है जिसके सामने एक चाय की दुकान है और कुछ आदमी खड़े और कुछ बैठे हुए हैं और सामने कुछ बिल्डिंगे --

बने हुए हैं और ऐ_सी लगे हुए हैं और--

ये टप लगे हैं जिनमें अंदर बलप लगे हुए हैं ये पीले --

कीबोर्ड दिख रहा है सामने एक महिला खड़ी है जिसकी साइड में--

सामने एक बिल्डिंग दिख रही है जो पीले और--

पेड़े दिखाई दे रहे हैं ऊपर सफेद नीला आसमान--

शर्ट पहने है और लाल टोपी है और पैर वाला सफेद टोपी लगा है हाथ में पेपर है नीचे जमीन में ब्लैक एंड वाइट दिख रही।

दोनों साइड सफेद पर्दे लगे हुए हैं ऊपर छपेस सत है।

चदर बिछी हुई हैऔर सर में ग्रे कलर के सोफे रखे हुए हैजिनके।

सामने एक कार खड़ी हुई है और कुछ आदमी और महिलाएं दिख रही है।

सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जो टेबिल से लग के खड़ा है टेबिल --

ब्राउन कलर की है और कांच सफेद कलर के है अंदर दो बाल्टी।